होटल के बाहर कुछ पेड़ पौधे ल गे हुए हैं और यहां पर बहुत सी बाइक भी खड़ी हुई है।

और कुछ खाली प्लाट भी डले हुए हैं इस जगह से बहुत से हरे भरे पहाड़ भी नजर आते है।

यह एक गार्डन है इस गार्डन में चारों तरफ विभिन्न विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे लगे हुए है।

इस गार्डन में एक अब फुव्वारा भी बना हुआ है जिसके चारों तरफ हाथियों की मूर्ति बनी हुई है।

यहा पर एक गेट है इस गेट से लगकर बहुत से हरे भरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।